एक घर का निर्माण हो रहा है जिसमें कारीगर लगे हुए हैं और मजदूर भी लगे हुए हैं और एक मशीन भी कार्यरत है जोकि पहला माला डालने में कार्य कर रही है।

किसी भी प्रकार की इ कमी होने पर उसे ठीक किया जाता है। अचानक यह जगह जगह पर आपको मिल जायंगे क्यों की कहीं भी गाड़ी ख़राब हो सकती है तो एक निश्यत अंतराल के बाद यहाँ वहाँ देखने को मिलेंगे।

कि कहीं से भी लीकेज ना हो और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो।

किसी भी आधिकारिक आवास या किसी भी बिल्डिंग ईमारत की सुन्दरता उसके इमारत से जादा उसके आसपास प्राकर्तिक द्रश्य से अधिक होती है और --